तक ज़मीन थोड़ा खाली है और वहाँ --

उसके बगल में ए यूनियन बैंक के बाहर में सीढ़ी भी लगा हुआ --

अद आदमी है जो जा रहा है | पी.डब्लू. का बिल्डिंग उजला रंग का है।

उसका बोर्ड विवका का नाम हॉस्पिटल का बोर्ड जिला है ।

एक पार्क है पार्क में बहुत सारे बड़े-बड़े --

डस्टबिन के पीछे भी छोटे-छोटे से पेड़ लगे हुए और कुछ पेड़ बड़े-बड़े भी है ।

ऊ में खिड़की है खिड़की--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

दो रस्ते है अंदर जाने--

डब्बा है उसमे तिरपाल रखा है पीले रंग का सामने --

काउंटर दीवाल उजरा है। वहां पर कैमरे लगे हुए है लाइट लगे हुए हैं।

बैठे और कुछ लोग खड़े है और वहाँ पे बहुत सारी लाइटे लगी हुई है ।

कं जो दीवाल है वो खिड़ की है और कांच का है।

है ऊपर और उस दुकान का छत कर्कट का है।

सीढ़ी पे लोहे का ग्रील लगा हुआ है और चौताल पे बहुत सारे बड़े-बड़े डब्बा रखा हुआ है और --

बहोत सारी लड़की है जो नृत्य कर रही है आगे वाली लड़की का --

एक घर है जिसका रंग ब्लू है उसका कर्कट का घर है उसके घर में जिम चलता है ।

एक जिम है वहां पर जिम के बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट है बैठ कर जिम करने वाले खड़े हो कर जिम करने वाला --

साम उस पे लाइट लगा हुआ है उस के पीछे बड़े-बड़े पेड़ हैं और सामने खाली जगह --

और टावर है उसके पास और कुछ बड़े पेड़ है और बहुत सारे घास है छोट-छोटे से आसामान --

उजला है और पीछे भी एक टावर और पीछे बड़े-बड़े पेड़ दिख --

एक आदमी साल ओढ़ कर रिक्शा चला रहा है | एक औरत साल ओढ़ कर खड़ी है और --